सामने एक सुंदर सा रूम हैं.

ढलाई का काम जोरो सोरो से हे.

ग्रीन यूनिफार्म में है दो महिलाये वील चेयर में बैठी है जो सायद प्लेन मे चढने वाली हैं.

शायद यह जलाशय किसी पार्क का है.

एक ठीक दूकान के सामने खड़े होके कॉफी पी रहा हे.

बस जाने को रेडी हे और लोगो की भीड़ खचा खच हे.

यहाँ तरह तरह की मछलिओ की वेराइटी हे.

सुन्दर से कपडे की दूकान हे जहाँ तरह-तरह के कपडे टंगे हुई है हेंगर मे टंगे हुई स्टॉल लगे हुई है।

और उसके बगल में काले कलर का गेट है जिसमे शुभ लाभ लिखा हुआ है गेट बहुत ही खूबसूरत हैं.

सामने पुराने रजवाड़ों के महल कि दीवार है.

दीवाल भी बहोत पुरानी लग रही है.

जिसमे की दीवार नहीं है कांच का ऐसे घिरा हुआ है.

गाड़ियों के कलर बहुत ही खूबसूरत हैं.

आसपास बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं हरे हरे.

सामने का नजारा बहुत ही खूबसुरत हैं.

उसकी खूबसूरती बहुत ही मनोरम है हल्का हल्का धुआं धुआं है.

जैसे सुबह का टाइम हो हरे-भरी हरिया--

घोड़ी के गर्दन से लगी रस्सी खींच रहा है और--

तीनो बोहोत सुन्दर फूल से सजित और वस्त्र पहनाये हुए हे.

रौशनी से भरा हुआ एक जेंटलमैन खड़ा हे ठीक सामने.

उस आदमी के मुंह में मास्क लगा हुआ है आयरन करने में उसका ध्यान लगा हुआ है पूरा.

पिच बना हो जिसमे पिच बना हुआ है.

स्टंप भी लगे हुए है लगा हुआ है.

मैदान पूरी तरह से तैयार हे खिलाडीओ के खेलने के लिए.

रोड पे बाइक दिख रहा है कचरा गाड़ी चल रहा है रोड के किनारे.

बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हे नारियल का पेड़ दिख रहा हे रोड के बगल मे लाल कलर का बंगला दिख रहा हे.

जीसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट है और बड़े बड़े पौधे भी है.

बड़ी सी लाइब्रेरी की बिल्डिंग दिख रही हैं.

एक किताब की दूकान दिख रही हैं जिसके अंदर भगवान की पूजा हो रही हैं।

सा गुफा है जिसका मुंह बहुत ही छोटा है.

इस रूम मे दो गाडी हे एक बाईक हे और एक स्कूटी हे दो --

उसमें चिप्स की बहुत सारी पेकेटे लगी हुई है ब्लू रेड ग्रीन येलो कलर की.

इनका यूनिफोम बोहोत सुन्दर लग रहे हे वाइट फ्रॉक और ऑरेंज टोपी.

बिल्डिंबग ऊँची हे जोकि बिजली के तार स से सटी हुई लग रही हे आसमान एकदम नीला दिख रहा हे.